इस तस्वीर में आप को रेल्वे स्टेशन का प्लैट --

बी_पी व शुगर भी--

कॉर्नर दिखाई दे रहा है।

सभी प्रकार के फल मिलते है।

के बाहर की है--

पर बहोत सारा गंध रखा हुआ है।

तथा एक कूलर भी--

यह बहुत बड़ा स्कूल है।

आपको सांगवान इंटरनेशनल स्कूल --

इस तस्वीर में आप को एक मार्केट दिखाई दे--

यहां पर नई स्कूटियां खरीदी जा सकती है।

चावल व कोलगेट बिस्कुट --

रही है यहां बहोत सारे लोग--